ई देखो घर है पक्का का घर है अगल-बगल बक्सा-बक्सी दिख रहा है अच्छा दिख रहा है और चौकी है अगल-बगल और कुछ दिख रहा पक्का का घर दिख रहा हैं।

फूल गुलाब अलग-अलग सब फूल दिख रहा है हरा भरा दिख रहा है अच्छा जगह दिख रहा है एकदम हरा भरा दिख रहा है एकदम झकाझक दिख रहा है लाइट लाइट --

ये देखो नीचे से ऊपर पानी जा रहा है एदम बेहतरीन नीचे से ऊपर जा रहा है पानी कभी देखे हो पानी वो नीचे से ऊपर जाने के लिए ऊपर से आता हैं त --

ए होंडा गैरेज है देखो यहाँ बाइक लेने आते है बाइक स महंगा सा बिकता है अच्छे रेट मे देते है यहां।

यहाँ देखिए कितना बाइक जा रहा है रोड औ कार है ओ भी आते हैं बाइक लेने स्कूटी लेने सब इतना बाइक दिख रहा है देखो अच्छा बाइक दिख रहा है बेहतरीन हैं मिलता है। रेट मे।

ये देखो हरा -भरा दिख रहा है अगल बगल एकदम दिख रहा है खड़ा कर दिए हैं बड़ा एक नम्बर दिखा रहा है एकदम--

ये देखो झररा कितना अच्छा लग रहा है बेहतरीन है पत्थर है अगल -बगल दिख रहा है पानी गिर रहा है।